और यहाँ पे एक पेड़ अ पेड़-पौधा भी है बहुत बढ़िया हरियाली है और यहाँ साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया हैं और यहाँ कॉलेज के बगल में फूल लगाए --

और यहाँ पे कुर्सियाँ बहुत अच्छे तरीके से लगाई गयी हैं अ लगाई गयी हुई हैं और हर एक चीज़ मतलब फूली डेकोरेट --

ओ की सीतामढ़ी कारगिल चौक में स्थित है यहाँ हमेशा भीड़ ही रहता है भीड़-भाड़ एरिया में है बस स्टैंड के पास है।

ढोलक का वैरायटी है | यहाँ हर टाइप का दुकान मतलब सामान मिल जाता है गाना वाना संगीत वंगीत से रिलेटेड |

जा रहा है मास्क लगाया हुआ है। बहुत सारा बोट है कोई समुन्दर के किनारे का फोटो लग रहा है और लोग यहाँ घूमने जाते हैं नाव पे बैठ के। बड़ा-बड़ा नाव है यहाँ पे।

सुन्दर झूला है। दो झूला है इसमें। दोनों बच्चे के झूलने वाला झूला है।